यह एक नदी है और यहाँ नदी में पुल बनाया गया है क्योंकि इस नदी में हमेशा बहुत ही पानी रहता है जिस कारण --

क्योंकि पहले से ही हमारे देश की तरक्की हुई और उनके जीवन में उन्नति होगी।

यहाँ पे ग्राउंड में हर रोज़ पानी दिया जाता हैं ताकि घास हमेशा हरी रहे।